व्हाइट कलर के बोर्ड के अंदर पावर लिखा--

तीन पंखे हैं फर्श पे नीले कलर की मेट पड़ी है।

ये एक किताब की दुकान है।

एक सामने टी_वी लगी है बड़ी सी।

कई आदमी हैं। इसपे भूरे कलर की दीवाल है काली कलर की पट्टी --

के बगल में एक आदमी बैठा हुआ है।

ये एक कपड़े की दुकान है दुकान की छत पे गोल गोल सफेद कलर की लाइटें लगी हुई हैं।

वाली मशीन है सामने एक लड़का फोटो खींच रहा है।

ये एक बहुत बड़ी सफेद कलर की बिल्डिंग है।

ये एक मॉल है। मॉल पे पीले कलर का पेंट है।

बगल में शीशे की बिल्डिंग है एक मंदिर है।

पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे हरे कलर के पेड़ लगे हैं।

के आगे एक हरे कलर का बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।

बहोत सी डिब्बे में मिठाइयां भी रखी हुई है।

एक रोड है रोड पे खंभे लगे हुए हैं।

इसमें कुछ बॉल लटक रही हैं जो पीले लाल ऑरेंज कई प्रकार की हैं।

तीन गमले रखे हुए हैं इसमें हरे कलर के पेड़ हैं साइड में जीने छत पे जा रहे हैं।

इसमें एक पीछे कांच की बिल्डिंग है कांच की बिल्डिंग के ऊपर नीले कलर का बोर्ड है।